बाउंड्री किया हुआ है।

इस पेट्रोल पंप के बगल में एक बड़ा सा घर है।

इस हाल में बेंचेज भी लगाए गए हैं।

और गेट के पास बाईके लगी हुई है।

यह एक फैक्ट्री का दृश्य है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है इस--

चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है इस--

और दरवाजा का कलर ब्राउन कलर का है।

इस मकान के दीवार का कलर --

इस घर के बाहर जरनेटर भी रखा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

इस दुकान में एक युवक खड़ा है।

और फर्श पे टाइल्स बिछी हुई है।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

यह एक पंडाल का दृसय है। इस --

छोटे टूल्लू बल्ब लगाए गए हैं।

नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

दुकान के बाहर पोस्टर भी लगा हुआ है।

बहोत सारे समाने रखे हुए हैं।

रोड पर एक गेट बना हुआ है।

एक कमरे का दृश्य है इस कमरे की दीवार पे फैन लगाए गए हैं इस कमरे की सीलिंग पे एक बल्ब लगाया गया है।

और दुकान के बाहर गाड़ियां पार्क की हुई हैं।

रोड पर कुछ लोग हैं।

इस ग्राउंड के बाउंड्री के बाहर--

अलमारी में सामान रखे हुवे हैं।

और फर्श पे टाइल्स बिछी हुई है।